और ये सर पे ब्योहर की जगह है जहाँ बहुत सारे लोग अपने-अपने शिकायते स दर्ज करवाने के लिए आते हैं।

और वो लेने के लिए उत्सुक है लेकिन दुकनदार बिजी है अपने काम में।

और ये दूकान का नाम अफज़ल फर्नीचर फैक्टरी है।

उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जमा हैं किसी गांव की यह फोटो है।

एक खाली जगह पे बहुत बड़ी और चौड़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कुछ शायद मॉल वॉल खोलने के लिए।

और ये सरकारी काम में व्युक्त है और यह बहुत जगह पाई जाती है जहाँ देखिए आप दस कदम पे ए.टी.एम. मिल ही जायेंगे।

बाढ़ में डूबी हुई बस्ती हैं इसमें बाढ़ का पानी शहर में आ रहा हैं और जिसमें बहोत सारे गांव और बस्ती डूब चुकी हैं और बहोत सारे लोग ये घर छोड़ के चले जा चुके हैं।

ये एक तरह का कैफे है जहाँ बहुत सारे सर्टिफ़िकेट टंगे पड़े हैं बहुत सारे फोटोज टंगे पड़े हैं जहा दो सीट पड़ी है बगल में कूलर रखा गया है ये किसी का घर है बगल में मेज़ रखी पड़ी है आ साइड में एक काउंटर बना पड़ा है।